यहां पर एक बहुत सारे समान मिलते हैं।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति यहां पे दिखाई दे रहे हैं। मेले में यहां पर ये मेले में सामान लेते हुए दिखाई दे रहे है तीन झूले बहुत बड़े-बड़े लगे हुए हैं।

यहां पर एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक बड़ा नाव दिखाई दे रहा है यहां पर एक--

खिड़कियां लगाए दिखाई दे रहे हैं उपर सोलर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर--

बहुत सारे यहां पे दिखाई दे रहे हैं।

लगाया हुआ दिखाई दे रहे हैं यहां पर कैसी द्वारा दिखाई दे रहे हैं यहां पर पत्ते लटके दिखाई दे रहे हैं यहां--

एक खंभा दिखाई दे रहा है यहां पर।